और पेड़ पौधे लगे हुए है गाड़ियां बस स्टो स्कूटर फोर व्हीलर और सब आ जा रही है।

आ यहाँ पे ये पेड़ उड़ लगे हुए हैं बहुत सारे नीचे पत्ती पड़ी हुई है जिसका रंग काला है।

अ यहाँ पे यह अ केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और गेट लगा है जिसका कलर काला है गेट का।

पाव रखा है चॉकलेट रखी है डाइरिया रखी हुई है इसी के बगल से कम लैपटॉप रखा हुआ है जिसका रंग काला है।